और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ मकान भी बने हुए हैं।

यहाँ पे स्टेज बना हुआ है जिसपे कुछ लोग प्रस्तुति करते हुए दिखाई दे रहे हैं और शाही लाइटे भी लगी हुई हैं।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

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसके दिवार का कलर वाइट पिंक और ग्रीन है सीढ़ियां बानी हुई है। बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है और पतों का कलर ग्रीन हैं।

भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक हैडपम्प लगा हुआ है। पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। बिजली की तार भी दिखाई दे रही है। ऊपर आसमान भी दिखाई दे रही है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।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

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है। जिसकी दीवाल का कलर वाइट और यहाँ पे एक गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक टेबल रखी हुई जिसकी --

ब्लू कलर कपडे पहेन रखे है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे कुछ चेयर और टेबलें भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं और नीचे जमीन दिखाई दे रही है।

और दीवार दिखाई दे रहे जिसका कलर वाइट और रेड है। नीचे बहोत सारी सीढ़ियाँ टाइप की बनी हुई हैं और जमीन भी दिखाई दे रही है।